जो लोहे का खम्बा है वो भी मैदान के बिच में कुछ जगा पर घास नहीं है और जो घास है वो

यहाँ पर बोहोत सरे जो फोटो है वो भी लगे हुए है और का भो फोटो लगा हुआ है पास में कला कलर का गेट भी है|

ये एक तालाब है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। और यहां पर आस-पास घना जंगल है। जिसके कारण यहां पर वो जो वो भी है। ऊपर बादल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं।

इन डिब्बों को जो वो जो सीटें वो लगी हुई हैं। पास में गाड़ी का इंजन भी रखा हुआ है और ए पास में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर एक नाव चालक अपनी चप्पू को चला रहा है और यहां पर ब- एक आदमी हाथ ऊपर किये हुए खड़ा है।